काले रंग के जूते पेहने हैं और रिबन लगाए हैं लाल रंग की एक लड़की ने चश्मा लगाए हैं बड़ा सा ग्राउंड है।

और बड़ा सा प्लेटफार्म है उसके छत का कलर फिरोजी और सफेद है कुछ झाड़ दिख रहे हैं हरे रंग के कुछ छोटे बिल्डिंग है।

और छोटे छोटे पौधे हैं उस पर।

झाड़ के पत्ते हरे रंग के हैं आसमान खुला--

क्रीम कलर लगा है काले रंग के पर्दे हैं।